सिंगल फ्लोर्ड --

ये एक जिम की तस्वीर है और यहां पर काफी सारे--

इमेज एक स्विमिंग पूल की है जहां पर कुछ--

और जिम की मशीनें रखी हुई हैं।

कंस्ट्रक्शन वर्क साइट की है जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और जहां पर एक मजदूर--

और उसके अलावा वहां परअह कुछ--

यह ब्रांच ए_जी चौक के पास स्थित है।

अथवा किसी वर्कशॉप कादिखाई पड़ रहा है।

जो प्राकृति में स्थित है।

तथा यहां पर एक बहुत खुला सा स्पेस बैठने के लिए बनाया गया है।

और मछलियां बहुत बड़ी-बड़ी हैं।

और इस गैरेज का आधा शटर खुला हुआ है।

साफ-साफ शब्दों में इस संस्था का नाम लिखा गया है।

जिम के उपकरण रखे गए हैं।

अ खाने के लिए अलग-अलग बर्तनों में खाना रखा गया है।

कुर्सियों को रखा गया है और आसपास की जगह को अलग-अलग लाइटों से सजाया गया है।